ब्राउन और काले रंग की पी_ओ_पी है।

हरे रंग के झाड़ है उनकी टहनियां ब्राउन रंग की है।